यह पिक्चर किसी जिम की है।

एक रेड कलर की कूड़ेदान भी दिखाई दे रही है।

साइबर कैफे का नाम ए बी एस साइबर कैफ़े है।

इस साइबर कैफे में पैन कार्ड के लिए अप्लाई होती है।

दिन का मौसम दिखाई दे रहा--

इसमें एक इंसान माइक पे कुछ भाषण दे रहा हैं।

इस पिक्चर में दो लोग सेल्फी क्लिक कर रहे --

में पीछे पहाड़ों का व्यू भी दिख रहा है।

इसमें चार ट्रैवलर्स दिखाई दे रहे हैं।

दो ब्लू कलर की टेबल एवं एक स्काई --

जैसे आगे में डेटोल की कुछ डब्बे दिखाई दे रहा है।

और कुछ बच्चे एवं बच्चियां खेल रहे--

पिक्चर में एक नदी दिखाई दे रहा--

पिक्चर में सारे ग्रोसरी से रिलेटेड सामान आती है।

एक रैक पे टोमेटो सॉस की बोतल भी दिखाई दे रही --

जगह काफी आकर्षित दिखाई दे रही है।

सामने एक एलमुनियम की बाल्टी भी रखी है।

यह यांगोन म्यांमार में स्थापित है।

यह पिक्चर कहीं तीर्थ स्थल की दिखाई दे रही है।

नीचे में कुछ बोड़ी रखी हुई है।

यह पिक्चर किसी छोटे मोटे किराने दुकान की दिखाई दे रही है।